उसमें बहोत सारी वृक्ष लगी हुई नजर आ रही हैं।

बहोत बड़ी सफेद रंग की बिल्डिंग दिख रही--

यह हमें लोहे की बनी नजर आ रही है।

उसके बाहर बहोत सारे लोग नजर आ रहे हैं।

एक टेंट लगा रहा है।

का दृश्य नजर आ रहा है।

इसका कंस्ट्रक्शन वर्क अभी बाकी है।

भोजन पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

देखने से यह तस्वीर हमें किसी --

पर कोई भी डॉक्टर या नर्स नहीं दिख रही--

इसमें लाल रंग किया हुआ है।